मूर्तियों के सामने एक पंडित खड़ा हो के पूजा करता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक वेडिंग सेरेमनी का दृश्य दिखाया गया है।

रूम के वाल का कलर लाइट येलो है।

इस पिक्चर में एक कैफे दिखाया गया है।

इस पिक्चर में एक लाइब्रेरी की तस्वीर दिखाई गई है।

तीन आदमी रिसेप्शन के सामने खड़े हुए दिख रहे हैं।

मैदान में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और एक स्क्रीन की तरफ़ देख रहे हैं।

छ औरतों ने लाल कलर की और एक औरत ने सफेद कलर की सारी पहनी हुई है।

पिक्चर में सुबह का वक्त है।

रंगोली का कलर रेड वाइट पर्पल एवं ग्रीन है।

वाल में तरह-तरह के बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें डिपार्मेंट आफ पोस्ट्स आधार इनरोलमेंट एंड अपडेशन सेंटर लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में एक मॉल का दृश्य दिखाया गया है।

मॉल के वॉल का कलर सफेद है।

मॉल के अंदर काफी सारे दुकानें भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में रस्ते के साइड में बनी हुई तीन बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

पिक्चर के सामने की तरफ चार पेड़ एवं एक फूटपाथ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक ऑडिटोरियम हॉल का स्टेज दिखाया गया है जिसके ऊपर एक आदमी माइक से भाषण दे रहा है।

पीछे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

त्ता गोभी के आसपास बहुत सारे अन्य अन्य पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।